यह एक दुकान है जिसमें बहुत सारे कपड़े दिखाई दे रहें हैं और बॉल भी है जिसमें हरा बॉल है।

काला सफेद आदि रंग के कपड़े दिखाई दे रहे हैं और --

यह एक रेस्टोरेंट है जिसमें बहुत सारे व्यक्तियाँ रेस्टोरेंट में।